जमीन का रंग रेड और कलर का हैपीछे भी गास उग रहा है और पीछे कुछ कचरा भी डला हुआ है मिट्टी भी दिखाई दे रही है सामने कुछ पेड लगे हुए है मिट्टी दिखाए दे रही है सामने पा--

सामने कुछ आदमी खडे हुए है और पेड़ लगे हुए है समुद्र में पानी भरा हुआ है और बीच पर कुछ जगह --

बगल मे पेड़ लगे हुए है कुछ घास की हम्म टुकड़े भी लगे हुए है एक फूलवाला पेड़ भी लगा हुआ है नाव के पीछे ऑरेंज कलरका कुछ रखा हुआ है नाव का कलर नीला है।

एक शटर लगी हुई है और उ अं एक बैनर चिपका हुआ है एक आदमी उम सर दिखाई दे रहा है।

समुद्र की बगली मे कुछ नन नन पेड़ भी लगे हुए है समुद्र की लहर आ रही है एक बाईक और कोना सा दिखाई दे रहा है रस्सिया रखी है सामने कुछ एक रस्सी पीले कलर की है।

और ए.सी. या लगे हुए है ए.सी. ओ का रंग सफ़ेद है दो खिड़कियाँ ऊपर लगे हुए है एक सज्जा भी बना हुआ है दूसरी तरफ भी भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड टंगा हुआ है एक क्रीम कलर की--

ब्रिज काले रंग का है उस पर एक--

और बगल मे बाउंड्री है और औ बाउंड्री का रंग काला है और उसमे थोड़े-थोड़े घास के टुकड़े लगे हुए है एक बाउंड्री और दिखाई दे रही है जिसका रंग नीला है और पीला है।

एक रोड मे रेलवे की पठरी गए है जिसके दोनों तरफ ब्रिज बना हुआ है और कुछ खंबे भी लगी हुए है खंबे पर काई लगी हुई है। अगल बगल मे छोटे छोटे पत्थरो के टुकड़े डले हुए है।

जमीन पर भी पानी भरा हुआ है और कुछ घा घास भी लगी हुए है और कुछ जानवर भी चर रहे है उधर की साइड कुछ बड़े बड़े पेढ भी लगे हुए है कूछ छोटे छोटे पेढ भी है।